और बैलून से इसको डेकोरेट किया गया हैं।

ये जो पिक्चर है ये किसी कार गैराज का लग रहा है।

ये जो पिक्चर है इसमें शाम का टाइम दिखाया गया है ये किसी मंदिर का पिक्चर लग रहा है।

ये जो पिक्चर है ये किसी हॉस्पिटल का लग रहा है जिसमें बहुत से बेड डले हुए हैं और उनके पास डस्टबीन रखे हुए हैं पर्दे लगे हुए हैं।

कार को आगे से ख खोलकर उसको ठीक कर रहा है।

और उनके लिए कुछ खिलौने रखे हुए हैं इसमें पेट्स का हर टाइप का सामान रखा हुआ है।

सामने एक मिरर रखा मिरर है और साइड में इनके--

टूल्स रखे हुए हैं और बलुंस लगाकर कुछ डेकोरेशन की गई है और ऊपर पंखे चल रहे हैं और लाइट्स चल रही हैं।

ये किसी कुंग फू कराटे की क्लास का पिक्चर है जिसमें ऊपर पंखा है।

आदमी रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और ये खिड़कियां है जो की कांच की हैं यहां से बाहर का व्यू आ रहा है जिसमें कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बाहर से।

और सामने जो मिरर है उसमें काम कर रहे हैं सैफ का रिफ्लेक्शन हो रहा है।

और एक आदमी है जो किताबें खरीद रहा है तथा दुकानदार उसे दे रहा है।

भीड़ में से बाहर का व्यू आ रहा है जिसमें गाड़ियां और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

म्यूजिक सिस्टम दिखाई दे रहा है स्टेज पर बच्चे हैं वो अपनी अपनी कलाकारिया करके दिखा रहे हैं।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

एक स्कूल के प्रोग्राम का पिक्चर है जिसमे बड़े बड़े अक्षर मे स्कूल का नाम लिखा गया है।